लोअर ग्रीन कलर का है।

लेदर है एक टूल है।

रोड पे बहुत सारा पत्थर दिखाई दे रहा है।

और यहीं अंदर में बहोत चेयर्स भी है।

इस तस्वीर में एक कैफे दिख रहा है।

नीचे भी टाइल्स रखे हुए है।

यहां पे दो चेयर डिखाई दे रहे हैं।

लाइट बल्ब और कुछ डेकोरेशन भी--

राइट साइड में एक बड़ा व्हाइट ट्रक खड़ा है।

कुछ लोग आस पास खरे है।

कुछ लोग बैठे हुए भी हैं।

व्हाइट कलर का पिलर्स है।

एक बकेट दिखाई दे रहा है।

रेड और वाइट चेक टास्क भी है।